लेकिन स्वागत की तैयारी काफी जोर-शोर से चल रही है।

ये एक क्लिनिक है जो कि होम्योपैथ का क्लिनिक है इस क्लिनिक का नाम नरायणी होमिओ क्लिनिक है ।

लोग बड़ी संख्या मे अपने परिवार के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ भोजन ग्रहण करने आते है और यहाँ रात्रि-शाम की व्यवस्था है यहाँ लोगो को काफी रिसपेक्ट मिलता है सम्मान --

ये एक हमारे भारत की बहुत बड़ी नदी काफी पवित्र नदी है जिसका नाम द गंगा रिवर है आनी की ये गंगा नदी है । इस नदी में --

ये एक पार्क है इस पार्क मे लोग काफी बड़ी संख्या मे आते है।

ये लड़की नृत्य कर रही है डांस कर रही है। ये लड़की डांस कला में काफी माहिर है और ये भारतनाट्यम का प्रदर्शन कर रही है।

और यह स्कूल के कॉरिडोर में हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं सभों का --